येल्लो कलर की पुट्टी है।

चॉकलेटी है पेड़ पे जो है तिरंगा कलर हुआ है सामने पाँच-छ पेड़ हैं। साइड में ग्रिल है।

साइड में शटर है। जिस पे रेड पेन्ट हुआ है फाइनेंस --

दुकान है परचून की दुकान है जिसमें --